कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे लोग दिख रहा है और काली कलर की चेयर भी दिख रही है और कुछ ऐ लोग कुछ कह रहा है किसी से वो भी दिख रहा है कुछ क्रीम दिख रहीं है।

तिरा पुता है वो भी दिखाई दे रहा है और शीशे भी कुछ दिखाई दे रहे है और कुछ लाइट कुछ बोर्ड भी--